और ये कोई बढ़िया सी नाई की दुकान है जो नई नई खुली हुई है।

यहां पर एक सिस्टम देखते भी यहां पर खोल रखा है यहां पर एक सफेद रंग--

यहां पर ये बिल्डिंग लगी हुई है जो बढ़िया सी ल बड़ी बहोत बड़ी बिल्डिंग लग रही है।

चर्च की कुछ है पर पीछे एक पीले रंग की दीवाल भी लागी हुई है बीच में यहां पर ऊपर एक मूर्ति भी है।

यहां पर काफी बंदे कुर्सी पर बैठ कर वेट भी कर रहे अपने हवाई जहाज का और बढ़िया-बढ़िया पंखा वंखा लगा रखा ये लॉज टाइप सा बड़ा प्यारा सा --

बहोत ज्यादा सारी चीजें रखी हुई है नीचे सॉस वगैरा भी रखे हुए हैं।

टॉयलेट है यहां पे ये सारी चीजें रखी हुई हैं।

और ये बड़ा ही अजीब सी फोटों लगा रखी यहां पे तो--

झिल टाइप ये बंदा वही देख रहा है देखने में बहोत सुंदर लग रहा है और उस तरफ को ऐसा लग रहा है कि जैसे--

दीवाल बना रखी है एक पौधा भी लगा हुआ है बगल में बहोत सारी कुर्सियां भी हैं।

और खंबे भी लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है लाइट वाइट की व्यवस्था भी है यहां पे और बंदे बड़े खुश हो जाएंगे नहाने के बाद इसमें।

और पीछे वहां पर मन भगवानों का पोस्टर भी लगा हुआ है नीले रंग के खंबो के बीच में--

वो लगा रखे हैं वहां पर भी भगवान की मूर्ति बनी हुई है और पीछे लाल रंग का--

और सीढ़ियां ऊपर को जा रही हैं बगल में पंखा भी लगा हुआ है देखने में काफी अच्छा है पूरी सीढ़ियों की सजावट बहोत अच्छी करी हुई है।

और सामने गुब्बारे लगे हुए हैं एक तिरंगा झंडा भी कांच पर लगा हुआ है बहोत बढ़िया लग रहा है।